यहाँ मेला लगा हुआ है बहुत सारे आदमी मेला मे घुमने आए हुए है एक हाथी मेले मे आया है जो सभी बचे हाथी पर चढ़ रहे है हाथी वाले बच्चों को हाथी पर बैठा कर पैसा लेते है।

यहाँ कोई शादी विवाह समारोह का खाना बन रहा है यहाँ बहुत सारी औरते भी खाना बनाने में जुटी हुई हैं यहाँ बहुत सारे आइटम्स बनाए गये हैं एक पानी के टैंकर भी लाया गया है बहुत स्वादिस्ट खाना यहाँ बन रहा है ।

लगाए गए हैं यहाँ बहुत सारी औरतें मम मंदिल में पूजा करने आए हुए हैं यह लोग काफी अच्छे --

यह एक मस्जिद है यह मस्जिद बहुत ही अच्छे है यह मस्जिद के बगल में बहुत सारा पैर हैं जिसमें दो नारियल का पैर भी हैं यहाँ मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को नवाज़ अदा करने के लिए आते हैं ।

सभी कंपनी के मोबाइल मिलते हैं यहाँ लोग मोबाइल लेने के लिए बहुत दूर-दूर से आते हैं यहाँ एयरटेल का रिचार्ज भी किया जाता है।